और साइड में और एक बिल्डिंग खड़ा है और फिर सामने में दो तीन पेड़ लगा हुआ--

इसमें ऑटो दिख रहा है।

बहोत सारा लोग बैठे हुए हैं जो मार्केटिंग के लिए आए हुए हैं।

उसके बाद ग्रास है और बिल्डिंग भी देख रहा है।

यहां में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसका एक्सीडेंट हो गया है और इसका पांव में प्लास्टर लगा हुआ है।

तो ये एक घर दिखाई दे रहा है जिस घर के ठीक सामने में यहां में एक तिरंगा लहरा रहा है।

इसके बाद दूसरा बिल्डिंग में स्टेयर दिख रहे हैं।

और गेट का अंदर बहुत एक बड़ा बाउंड्री दिखाई दे रहा है गार्डन दिखाई दे रहे हैं।

और यहां का आसपास में बहुत सारा पेड़ दिखाई दे रहा है सामने में एक टावर दिखाई दे रहा है।

और ठीक मिडिल में एक ऐ_सी लगा हुआ है।

ठीक सामने में बेंच बैठा बहुत सारा बेंच है जिसके ऊपर बैग रखा हुआ स्टूडेंट --

के पीछे में दिखाई दे रहा है इसका थम्सअप का बॉटल उसके बाद साबुन दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक आदमी को और चिल करते हुए कैप्चर किया गया है।

ठीक सामने में ग्रीन ग्रास बहुत सारा है।

और सामने में थ्री बाइक्स टू स्कूटी है और साइड में बहोत सारे लोग वहा मे खड़े हुए हैं और एक चेयर है।

और ठीक लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो वहां से एक आदमी चलते हुए आ रहा है।

और इसका बाउंड्री भी बहोत बड़ा है।

इसके बाद नीचे में देख सकते हैं एक वार जांब है उसका साइड में स्टेयर लगा हुआ है।

और यहां में बहोत सारा कस्टमर आये हुए हैं खरीदने के लिए।

यहां में बहुत सारा लोगों का मार्केटिंग चलता है।

पीछे में एक अ ब्लैक बोर्ड है और यहां में सामने में कुर्सी है टेबल है।